एक छत पर तीन औरतें हैं जो की एक तरफ झुकी हुई हैं।

और पेरो को छू रहे हैं और नीचे कारपेट बेचा हुआ और ये लोग योगा कर रहे हैं पीछे गमलो में फूल दिख रहे हैं उन पीछे भी घर दिख रहा हैं।

अ जो की तार लगे हुए उन पे और कुछ लोग वहां इधर-उधर जाते आते दिखाई दे रहे हैं।

प्लास्टिक में बहुत सारे झिंगा दिखाई दे रहे हैं जो की एक मछली होती है जिसको लोग खाते हैं।

ट्रे में जलेबी दिखाई दे रही है जो की पीले कलर की है और नीचे कढ़ाई दिखाई दे रही है और जलेबियां बहुत ही टेस्टी होती है लोग बड़े शौक से खाते हैं इसको--

मगरमच्छ दिखाई दे रहा है जो की लेटा हुआ काले कलर का थोड़ा बड़ा ही होगा मगरमच्छ और सामने पानी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारी औरतें पानी के अंदर खड़ी हैं और उन्होंने अपने हाथ को जोड़ा हुआ है।

एक हाल दिखाई दे रहा हैं जो की लंबा हैं और आगे की तरफ उसमें शीशे लगे हुए हैं और हाल में बहुत सारे फ्लावर रखे हुए हैं जो कि गमलो में हैं ।

छत पे भी लाइटे लगी हुई है बहुत ही सुंदर लग रही है और खंभों पे पंखे लगे हैं।